तथा दो खिड़की भी नजर आ रही है।

तथा पास ही में कुछ डमी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने की ओर कुछ टाइल्स नजर आ रही हैं।

पीछे की ओर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं।

फोटो में हमें सामने की ओर एक गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

पास ही में काफी सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

फोटो में हमें सामने की ओर एक किचन नजर आ रही है जिसमें ऊपर की ओर कुछ ब्राउन और व्हाइट ड्रोवर दिख रहे हैं।

पास ही में काफी सारे व्यक्ति भी खड़े हुए नजर आ रहे--

फोटो में हमें सामने की ओर एक घर जैसा दिख रहा है।

स्लैब के कोने पे कुछ सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

फोटो में हमें सामने की ओर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने की ओर एक मंडप नजर आ रहा है।

पास ही में एक खंबा भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।